आस-पास कई सारे तारें बिखरे हुए हैं इस सर घर के आ दोनो छोड़ पे दो रास्ता हैं सभी रास्ते पे आस-पास लोग खड़े --

यह एक चित्र है और इस चित्र में एक कमरा दिखाई दे रहा है इस कमरे के अंदर --

हरा एवं पीला कलर की दिखाई दे रही है इसके पास में एक बहोत ही बड़ा वृक्ष है और यह मृछ का आकार --

इ इक लोग काउंटर के पास खुर्ची पे बैठे हुए है काउंटर पे एक कम्प्यूटर लगा ए।

डिजाइन किये गए हैं केफे मे एक दरवाजा है और यह कांच की बनी हुई है इसके ऊपर कई सारे स्टीकर --

कई सारे लोग कुर्सियां पे बैठे हुए व हेयर कटिंग करा रहे है जिसमे कुछ लोग इनकी हेयर कटिंग --

बैठ्ठे हुए है और यह दुकान एक मछली की दुकान है इसमें कई सारी अलग अलग प्रकार की मच्छलियां रखी गई --

यह मूर्ति इस वरचन विद्या सागर जी की मूर्ति है और इसके निचे कई सारे अछि-अछि चीजों से इसे सजाया गया --

और पे छोटी-छोटी कुम्भज भी बनाई गई है और इसका रंग भूरा दिखाई दे रहा है जिसमे --

ऐनक लगाए गए हैं और जिसमे कुछ मशीन का रंग काला एवं पीला है जिसमे एक लोग खड़े हैं और वह सामने की और ताक --

अ कुछ सफ़ेद रंग की अ स्कूटी भी है सरक से कुछ ही दूरी पे एक बैंक है और यह बैंक अस्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया की ब्रांच --

इसमें कोचिंग का नाम प्रताप कोचिंग क्लासिस है और इसमें कई सार --

यह एक चित्र है और इस चित्र में एक मैदान दिखाई दे रहा है इस मैदान में ब कई सारे --

यह एक चित्र है और इस चित्र में एक ए.टी.एम. है। यह ए.टी.एम. यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया की ए.टी.एम. है।

कपडे एवं जैकेट्स की दुकान दिखाई दे रही है और कुछ दुकान खाने-पिने की वस्तु की दूकान दिखाई दे रही --

फुटबोल की बड़ी-सी ग्राउंड दिखाई दे रही है और इस ग्राउंड के दोनो छोर पे दो बड़े-बड़े --